और ट्रैक्टर भर के गेहूं उसमें रखे हैं थीली व्हीलर भी--

उस दुकान में बहुत सारा सामान मिलता है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और सुंदर सजा रखा है फूलों की माला गुब्बारे सजा रखे हैं।

और बहोत प्यारे प्यारे रंग नंगिले कपड़े पहन रखे हैं छोटी बच्ची बड़ी बच्ची सब--

ऊं कोट मिलते हैं बड़े प्यारे प्यारे कोट --

चार्जर पुराने फोन बिकते है और नए चार्जर मिलते है नए फोन भी मिलते है।

दिखाई दे रहे है और यहां दो नजारे--

सारा सामान सही रेट पे मिलता है।

बहोत सुंदर सुंदर दिखाइ दे रहा है।

यहां बच्चों की प्रार्थना हो रही है।

बैठे हुए हैं और बड़ा आरख और टेंट भी लगा हुआ है उस--